राइट साइड में बहुत सारे लोग चेयर पे बैठे हैं रेड कलर की चेयर है एंड अ लेफ्ट लेफ्ट साइड कोई भी नही है।

यहाँ पे पता नही क्या हो रहा है लेकिन पीछे पतंजलि टेस्ट टेस्टिं नमकीन ढाबा लिखा है और पीछे बोर्ड है जिसपे बहुत सारे चित्र कारी हो रखी है बेंच भी लगा है और बहुत सारे टीचर्स है| और शायद यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है जो की स्कूल यूनिफार्म में बैठे हुए |

इसमें एक किला बना हुआ है और बगल में बहोत सारे बैनर्स एंड फोटोज है जो की कंपनीज के एड्स कर रहे हैं नीचे के साइड कुछ पीपल्स है जो की कुछ प्रोडक्ट्स खरीद रहे।

बीच में कुछ बिस्किड्स के भी पैकेट्स भी है और कोलगेट की ब्रश भी है नीचे आटा और चावल का बोरा भी रखा हुआ है।